बच्चे तथा लोग भी खड़े हुए हैं।

इस छवि में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी पंजाबी ढाबा का है।

यहां पर फल फूल सब्जियां कपड़े अनाज आदि सब कुछ दिख रहा है।

तथा बिजली के तार दिख रहे हैं।

जिसमें कि स्टूडेंटस बैठे हुए।

और मंदिर टाइप में डिजाइन है।

कोने में तथा शिवलिंग बनी हुई है।

इस छवि में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी स्कूल --

इस छवि में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी स्विमिंग पूल यानी कि वाटर पार्क का है।

जिसमें की बहोत सारे सामान दिखा--

तथा कंप्यूटर के पार्ट जैसे की माउस सी_पी_यू वगैरा रखे हुए हैं।

जहां पर अअ होटल या रेस्टोरेंट कह सकते हैं।

यहां पर बहोत सारे स्टूडेंट्स बाहर खड़े हुए--

बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है।

इस छवि में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी होटल अथवा रेस्टोरेंट का--

तथा बहोत से काउंटर खाली पड़े हुये--

जिसमें कि अह पूजा अर्चना तथा जो भी हो रहा है।

जैसे कि बैट बॉल डॉल एंड अ अ चिडियास टेडी बीयर्स बहुत सारा सामान--

तीन से दो से तीन और गमले रखे हुए हैं।

और आस पास गुलदस्ते रखे--

इस छवि में दिखाया गया दृश्य जोकि किसी मॉल का है।

बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं।

सेलिब्रेशन से एर क्रिसमस डे का है।

जोकि अलग अलग सेक्शन वाइज में बैठे हुए हैं।

बहुत से लोग आस पास बैठे हुए हैं।

रेल खड़ी है या ट्रैवल कर रही है।

दिखाया गया दृश्य जो कि किसी शहर क्षेत्र का है जिसमें कि सामने से बहुत सारी दुकानस दिख रही हैं।

आसपास आते जाते हुए लोग देखे जा रहे हैं जिसमें की लाइट्स जल रही है कार में।

जिसमें कि ब्लू वाइट कलर के बलूंस लगे हुए हैं।

जिसमें की अ एक लोग एक्सरसाइज कर रहे--

आठ से दस फूल दिख रहे हैं जो कि गुलाब के हैं।

जो कुछ सीधी तथा कुछ उल्टा है पत्तियां--

बहोत सारी गाड़ियां आते जाते देखी जा रही है।

जैसे कि रेड अ रोज एंड व्हाईट रोज एंड येलो रोज ये बहोत सुन्दर दिख रहा हैं तथा बहोत सारी पत्तियां हैं।